और नीचे रखे हुए कुछ बॉक्स दिखाई दे रहे हैं।

सामने एक किचन दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर एक झूमर लगा हुआ है।

सामने कुछ कमरे दिख रहे हैं जिनकी खिड़की दिख रही है और एक खड़ी हुई सामने मोटरसाइकल दिख रही है।

और दो आदमी उसकी साइड में खड़े हुए हैं जिन्होंने सफेद कपड़े पहने हुए हैं।

र एक दीवार पर पीले रंग का एक पोस्टर लगा हुआ है।

ऊपर की तरफ एक स्विच लगा हुआ है और दीवार पर एक पेंटिंग टंगी हुई है।

ऑफिस के दरवाजे के बाहर एक कुर्सी पड़ी हुई है और सामने एक कुर्सी और पड़ी हुई है जो की एक मकान के अंदर है।

सामने मिट्टी का टीला दिखाई दे रहा है जिस पर बहोत सारे पेड़ उगे हुए हैं।

ऊपर की तरफ एक बैग रखा हुआ है जो कि डैश के ऊपर रखा हुआ है और एक साफा रखा हुआ है।

नीचे की तरफ कुछ फूल लगे हुए हैं जोकि कुछ लाल है कुछ सफेद है और कुछ हरी पत्तियां दिखाई दे रही हैं माला में--

पीछे की तरफ एक दुकान दिखाई दे रही है जिसमें एक तराजू रखी हुई दिखाई दे रही है।

इस फोटो में सामने एक बड़ा सा स्टोर दिखाया गया है जिसमें कुछ खिलौने रखे हुए हैं।

कुछ गिफ्ट रखे हुए हैं और कुछ परफ्यूम दिखाई दे रहे हैं।

सामने मेज पर रखी हुई कुछ घड़ियां दिखाई दे रही हैं।

इस फोटो में सामने एक फास्ट फूड की दुकान दिख रही है जिसमें एक आदमी फास्ट फूड तलता हुआ दिखाई दे रहा है।

एक कढ़ाई में चावमीन रखी हुई है और नीचे कुछ स्प्रिंग रोल रखे हुए है और कुछ बलब जल रहे है।

सामने कुछ कुड़ी कूड़ो के पहाड़ दिखाई दे रहे हैं जिनके पास हरे पौधे भी दिखाई दे रहे हैं।

एक खिड़की खुली हुई है एक आदमी का सीट दिख रहा है।

पीछे की साइड एक लड़का दिखाई दे रहा है जिसके गले में गमछा पड़ा हुआ है।

सामने कुछ व्हिस्की के डिब्बों पर कुत्ते बिल्ली बन रहें हैं।

सामने एक छोटी सी डोरी भी दिखाई दे रही है और एक काले रंग की पट्टी दिखाई दे रही है।

सामने एक बड़ा सा पेड़ खड़ा हुआ है जिसके नीचे गमला रखा हुआ है।